कितना अच्छा क्वॉलिटी आप का कितना अच्छा क्वालिफिकेशन मत पूछिए बहुत सुन्दर काम कर रहे है आपने बहुत बहुत भरी थैंक यू बहुत भरी थैंक यू भैया बहुत--

और एक गो यहाँ पे पौधा लगा हुआ है इधर भी पौधा लगा हुआ है।

सब घूमने जा रहे हैहमलोग परामून बहुत बढ़िया से है।

यहाँ पे एक सोफा लगा हुआ है उसके ऊपर लगा हुआ है बहुत सारा सोफा लगा हुआ है इधर भी एक टेबल लगा हुआ है।

बन रहे है होसजर हैक्या?

फील्ड बहुत चिकन चाकन दिख रहा है बहुत सुंदर दिख रहा है।

कितना मस्त लग रहा है क्या डिजाइन है इसका वाह! क्या बात है बहुत अच्छा है बहुत सुन्दर है।

वाह ए माई गॉड देखने में तो ये इतना बेस्ट लग रहा हैकी मत पूछिए यहाँ --

और यहां पे बोर्ड लगा हुआ हैं।

ये देखिये यहाँ पे ये अभी देखिये नीचे में घर बहुत अच्छा है ये नंबर का स्क्रीन शॉर्ट कर लेते हैं।